अ स्टेचू बना हुआ है और साइड में ल लोहे की रेलिंग बनी हुई है जो की देखने में ही बहुत सुंदर लग रही है।

इस फोटो में हमें एक इस फोटो में हमें एक लड़की दिख रही ही जो कि डांस कर रही है उसके वो नीचे रेड --

यह एक जंगल का एरिया लग रहा है देखने में यहां पे बहुत घने और--

अ पेड़ लगे हुए हैं और उसके साइड साइड में घास लगी हुई है जो कि देखने में बड़ी सुंदर लग रही है।

इस फोटो में हमें एक पहाड़ी इलाका दिखाया गया है।

इस फोटो में हमें एक नेचुरल सीन दिखाया गया है जहां बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं आसमान नीला है उसमें सफेद बादल है नीचे घास लगी हुई है।

और साइड साइड में पेड़ लगे हुए हैं।